लड़के बैठे हुए साइड में।

यहां एक लंबा सा स्विमिंग पूल है।

स्विमिंग पूल में बहोत सारा पानी है।

शोरूम के बाहर कई साड़ियां गाड़ियां खड़ी है गाड़ियां के रंग सफेद हैं।